इन तीनों में दो सरदार हैं।

इंजीनियर के मशीन है।

नाई की दुकान का उद्घाटन हो रहा हैं।

स्टेशनरी एंड गिफ्ट आइटम मिलती हैं।

ये इंटरनेशनल सेलिब्रेट हो रहा है।

बड़ी हैं टू प्लेट्स में राइस है।

ये ये पेट्रोल पंप की तस्वीर हैं।